एक बिजली का खंबा दिख रहा है।

शादी की पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है।

और बाहर की तरफ कुछ बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है दुकान के अंदर लाइट भी जल रही है।

देखिएगा यहां पर इस इमेज में--

हमें एक ऑटो रिक्शा वाला दिखाई दे रहा है।

दो नर्स भी दिखाई दे रही है हुं।

बाहर एक डस्टबिन दिख रहा है ब्लू कलर

यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है।